इस पिक्चर मे छे बल्ब जलते दिखाई दे रहे है।

पिक्चर में एक नदी को दिखाया गया है।

रंग बिरंगी की स्वेटर भी दिखाई दे रही है यहाँ पे।

खंभे का कलर ग्रीन है।

इस इमेज में आगे खड़े दो खंभे दिखाया गया है।

साइड में एक सफेद कलर का स्कूटी को रखा गया है।

इस इमेज में एक हॉल को दर्शाया गया हैं।

पत्ते भी नकली दिखाई दे रही है।

दुकान के बाहर दिए दगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और ए के केबल डिश एंटीना भी दिखाया गया है।

यहां एक फैन भी है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाया गया है यहां।

यहां फर्श भी दिखाई दे रहा है।

और यह जगह में बहुत सारी भीड़ इक्कठा हुए हैं।